इस फोटो मैं एक बूक स्टॉल को दर्शाया है तथा इसके पोस्टर भी लगाए गए है और एक भगवान की मूर्ति भी दिख रही है।

तस्वीर मैं एक जलाशय के नजदीक बहुत सारे हरे भरे पेड़ नजर आ रहे है और एक आदमी--

नजर आ रहा है और कुछ जानवर भी नजर आ रहे है।

इस तस्वीर मे युको बँक का बैनर दिख रहा है साथ मे बहुत सारे दो पहिया वहान तथा चार पहिया वाहन खड़ी है और बँक बिल्डिंग बहुत बड़ी है।

इस तस्वीर मे बहोत सारे नावे दिख रही है और बहुत छोटे-छोटे घास भी दिख रही है और नदी जलाशय में है।

इस तस्वीर मे एक नाव देखी जा सकते है जिसके बगल मे बहुत सारे पेड़ पौधे मौजूद है।